गेट लगा हुवा है जिसमें आधे नीचे की और --

सही में उतरने के लिए ग्राउंड है बना है व चारो ओर --

बना हुवा है जिसके बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और दूसरी ओर दो मोटरसाइकिल खड़ी है और सामने की और रोड पर --

तस्वीर में सामने की ओर पत्थर रखे हुए --

और आसपास के एरिया में भी कुछ लोग चलते हुये दिखाई रहे हैं और साइड में गार्डेन बना हुआ है।

दिखाई दे रहा है और नीचे की ओर घांस भी लगी दिखराई दे रही है और आसमान भी दिखराई दे रहा है।

की ओर बाइक खड़ी है और कार भी खड़ी दिखाई दे रही है।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

और नीचे की ओर भगवान की तीन मूर्तियाँ में हार रख टाँगे गए हैं।

इस तस्वीर में सामने की ओर मछलियों की दुकान लगी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में सामने की ओर हरी भरी घांस लगा हुवा बहोत ही सुंदर ग्राउंड दिख रहा है जिसमें एक झूला डला हुवा है।

इस तस्वीर में एक रोड दिखाई दे रही है जिसके आसपास हरा-भरा है। पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और रोड पर एक स्कूटी खड़ी हुई है।